कुछ में मिट्टी पानी से भरी है तो कुछ में एवं हरे-भरे घास उगे नज़र आ रहे है पीछे की ज़मींन पूरी सुखी पड़ी नज़र आ रही--

बच्चों के खेलने हेतु एक झूला --

ये सामने एक दूर -दूर तक फैला मैदान दिखाई देता हैं जिसमें सामने की ओर एक टीम खड़ी दिखाई देती है जो की जिनके समान भी यहाँ पोल के बगल में रखा दिखाई पड़ रहा हैं।

ये किसी स्टेडियम की तस्वीर दिखाई पड़ती है जहाँ लोगों के बैठने की जहाँ व्यवस्था है उसके ऊपर शेड का व्यवस्था दी गयी है सामने की ओर मैदान और मैदान में कुछ लोग प्रैक्टिस करते नजर आ रहे होंगे।

और दूर-दूर तक कई सारे घर अपार्टमेंट फ़्लैट और बंगली दिखाई दे रहे हैं जहां बगल से कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा --